यहां पर दो आदमी खड़े हैं और एक आदमी कंप्यूटर चला रहा है।

एक गाड़ी जा रही है बस के ऊपर कुछ व्यक्तियां--

दूसरा ट्रक उसे अपने साथ लेकर जा रहा है एक ट्रक का रंग--